पोस्टर है दिया हुआ है जो की सूचना में लिखा हुआ है अम्म डी.सी. अम्म सत्तर हां सत्तर और रॉयल अम्म एक सौ और रिजर्व --

दी हुई है जो की देखने में काफी खूबसूरत और बहुत ही अच्छा देखने को लग रहा और ये बहुत ही अच्छे है नज़ारे देखने को लग रही है काफी सुंदर और बहुत ही परफेक्ट ये दृश्य देखने को लग रहा रोड किया --